ये लड़की डांस कर रही है इस डांस का नाम है भरतनाट्यम और ये लड़की स्टेज पर है जो वाइट और सॉरी जो रेड और गोल्डेन कलर की साड़ी पहनी हुई है।

ये रास्ता भारती पब्लिक स्कूल है जहाँ पे ये बच्चे फेस्टिवल कर रहे है इनके हाथ में इंडिया का झंडा है।

ये एक छोटू किराना स्टोर है जो लग दिखने में लग रहा है ये शॉप किसी घर के अंदर ही है और ये शॉप हमे आधी दिख रही है उसका शटर का कलर ब्राउन है इस --

जमीन इसकी कदी जैसी जमी हुई है ये दिखने मे बहुत ही खूबसूरत है सामने नीला आसमान है और काफी सारे घर दिखाई दे रहे है उसके पीछे एक पहाड़ भी दिख रहा है।

भरद्वाज मेडिकल हॉल है। यहाँ पे अँग्रेजी आयुर्वेदिक पशु दवाएं एवं पतंजलि उपलब्ध --

ये एक प्रियन्सू मेडिकों है जहां पे अ कम्पलीट मेडिसिन स्टोर है जहां पे कम्पलीट मेडिसिंस मिलती है जिसको जो मेडिसिन चाहिए जो दवाई चाहिए वो यहां से आके उपलब्ध कर सकता है।

जय भारत मेडिकल स्टोर है जहाँ पे मेडिकल मिल जाता मेडिकल के सेट सारी दवाइयाँ उपलब्ध है उसके ऊपर एक बिल्डिंग बनी है जो काफी बड़ी है और रेड कलर की है।